इस फोटो में दिखाया है कि--

भी है और रोड से यहां एक ऑटो जाता हुआ दिखाई दे रहा है और एक मोटरसाइकिल जा --

यहां पर बहुत ही बड़ा एरिया है।

रोड पर एक थ्रैशर बड़ी सी मशीन --

लोहे की सरिया डाले गए हैं और बहु--

इस फोटो में दिखाई दिया है कि यहां पर एक बड़ा स--

है जिसमें यहां ऊपर ए_सी लगी हुई है।

इस फोटो में दिखाया है कि यहां पर एक बाहर की तरफ आदमी खड़ा हुआ है।